छोटे हरे दिख रही है हरी घास वहाँ पे नज़र आ रही है और एक बिलडिंग दिख रही है जो क्रीम कलर की नज़र आ रही है।

टीचिंग क्लास दिखाई दे रहा है जहाँ रूम नज़र आ रही है छोटी सी रूम है हैं पर काफी स्टूडेंट बैठे हुए नज़र आ रहे हैं जो चेयर्स हैं वो रेड कलर की दिख रही हैं।